इ लाल रंग के दरवाजा के भीतर एगो लाल रंग के गाड़ी खड़ल बा | इ गाड़ी को पेंट करे खातिर एकरा के भीतर डालल जाला हो |

रउआ लोगन इ फोटो में एगो बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक देख तानी | एकरा के बहरे के दुनूको शटर अभी बंद बा |

नदी देख तानी | एकरे ऊपर एगो लोहे के पूल बनल बा इ नदी के दूसरे छोर में एगो घाट बा |

बनाइल हई | एकरा के भीतर हमके तीन गो सुतुरमुर्ग देख तानी | इ तीनो गो शुतुरमुर्ग अपने बाड़ा में तफरी करत हैं |

रउवा लोगन इ तस्वीर में एगो बहुत ही सूंदर फुहारा देखअ तनी इ फुहारा एगो पोल के ऊपर बनल हअ।

रउआ लोगन ई तस्वीर में एगो मकान के फोटो देखे तानी।

अ इ पराठा देखने में बहुत ही लजीज और स्वादिस्ट रहल बा।

कोल्ड ड्रिंक के बॉटल उ पानी के बॉटल रखल हई एकरा के सामने हगीज के पैकेट टाँगल हई और मसाला --

रउवा लोगन इ तस्वीर में एगो बस देख रहल जानी जौन बस से राज्य परिवहन के बा एकरा के रंग --

इ गुम्बज और मस्जिद के --

हरियर और सफेद रंग से पोतल जाला इ मस्जिद के ठीक पीछे एगो छोटका पेड़ उगल हअ जे काफी सुंदर लग रहल --

इ बॉउंड्री के डिज़ाइन गोल-गोल बा औ एकरा के सामने एगो हरा रंग का गेट लागल हअ।

जेकरा के संगे तू लोग ढेर सारा लयका लोग देख रहल है।

रउवा लोगन इहां एगो तस्वीर स्कूल के देख रहल बानी एकरा के दीवार में नीला और लाल रंग के पेंट करल जाला।

रउवा लोगन इ तस्वीर में एगो बहुत बड़का बाजार के फोटो देख रहल बानी।

एकरा के भीतरे एगो स्टाम्प बनल बा अइसन लगता की जोनो कोई चोराहा को प्रदर्शित कर रहल।

इ पेट्रोल पंप एच.पी. यानी की हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के होला --

एकरा के भीतर बड़का बड़का आलमारी में किताब कॉपी रखल ह | एकरा के काउंटर के ऊपर ढेर सारा पेन रखल ह |